यह तस्वीर खुले क्षेत्र का है।

एक व्यक्ति काफी दे रहा है।

पर सी_सी_टी_वी कैमरा भी है।

कान के बीच में एक मशीन है मशीन का रंग काला है।

यह तस्वीर एक चर्च का है चर्च की दीवारें सफेद रंग की है।

चर्च में रंग बिरंगी कुर्सियां भी है।

दीवार पर एक एल_इ_डी टीवी भी है।

यह तस्वीर खुले क्षेत्र का है।

दीवार पर कई सारे पोस्टर भी हैं।

इमारत के नीचे नीला और सफेद रंग का गुब्बारा भी है।

गुब्बारे के पास कुछ व्यक्ति खड़े हैं व्यक्ति के पास हेयर एक्सपर्ट लॉरिअल प्रोफेशन लिखा हुआ है।

यह तस्वीर एक कमरे का है।

कमरे में खिड़की भी है।

कमरे में फर्श का रंग काला है।

दुकान में कई सारे रंग बिरंगे के मोबाइल के कवर हैं।